पर्ल में इफ और if एल्से कंडिशनल स्टेटमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे पर्ल में इफ स्टेटमेंट और if एल्से स्टेटमेंट मैं उबंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा
आप अपनी पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए
पर्ल में फोर फोरिच व्हाइल और do व्हाइल लूप्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल निम्न कंडिशनल स्टेटमेंट्स प्रदान करता है
इफ if एल्से if elsif एल्से और स्विच इस ट्यूटोरियल में हम इफ और if एल्से स्टेटमेंट्स देखेंगे
पर्ल में इफ स्टेटमेंट का उपयोग कोड के भाग को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है जब विशिष्ट कंडिशन संतुष्ट होती है
इफ कंडिशनल स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स निम्न है
इफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
कोड का भाग सेमीकॉलन निष्पादित होता है जब कंडिशन ट्रू है
एंटर दबाएँ क्लोज कर्ली ब्रैकेट
इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड निष्पादित होगा केवल जब कंडिशन ट्रू होती है
अब इफ स्टेटमेंट का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल स्पेस और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में conditionalblocksपीएल फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हमने इफ के लिए कंडिशन निर्दिष्ट की है जो वैरिएबल काउंट की वैल्यू को चेक करता है
इक्वल टो इक्वल टो चिन्ह देखें
यह कंपेरिजन ऑपरेटर है
कंडिशन count इक्वल टो इक्वल टो 5 वैरिएबल काउंट की वैल्यू के लिए फिर से चेक होती है
जब यह 5 के बराबर होता है इफ ब्लॉक के अंदर का कोड निष्पादित होगा
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ
सुनिश्चित कर लें कि आप उस डाइरेक्टरी में है जिसमें आपने अपनी फाइल सेव की है
किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें पर्ल हाइफेन सी कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल विंडो पर प्रदर्शित होगी
conditionalblocksपीएल सिंटैक्स ओक जैसे कि वहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर नहीं है हम पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे
और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
आई एएम इनसाइड इफ स्टेटमेंट गेडिट पर वापस जाएँ
वैकल्पिक रूप से हम ऊपर लिखी इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं
प्रिंट स्पेस डबल कोट्स आई एएम इनसाइड इफ स्टेटमेंट स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स स्पेस इफ ओपन ब्रैकेट डॉलर काउंट स्पेस इक्वल टो इक्वल टो स्पेस 5 क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
अब if एल्से स्टेटमेंट को देखते हैं
यह स्टेटमेंट उपयोगित है जब यूजर कोड के एक भाग को निष्पादित करना चाहता है जब कंडिशन ट्रू होती है और कोड के दूसरे भाग को जब कंडिशन falseहोती है
if एल्से कंडिशऩ के लिए सिंटेक्स निम्न है इफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ
कोड का भाग सेमीकॉलन निष्पादित होगा जब इफ कंडिशन ट्रू होती है
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस एल्से स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर
कोड का दूसरा भाग सेमीकॉलन निष्पादित होगा जब इफ कंडिशन फलसे होती है
एंटर दबाएँ क्लोज कर्ली ब्रैकेट
अब फिर से conditionalblocksपीएल फाइल पर जाएँ जिसे हमने गेडिट में पहले ही बनाया है
काउंट वेरिएबल को 4 निर्दिष्ट करें फिर इफ ब्लॉक के अंत में स्पेस टाइप करें एल्से स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ
प्रिंट स्पेस डबल कोट्स आई एएम इनसाइड एल्से स्टेटमेंट स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ और क्लोज कर्ली ब्रैकेट
यहाँ 4 वेरिएबल count के लिए निर्दिष्ट है
काउंट वेरिएबल के वैल्यू की तरह 5 मेल नहीं खाता है
इफ ब्लॉक के अंदर का कोड निष्पादित नहीं होगा
इसके बजाय एल्से ब्लॉक के अंदर लिखा कोड निष्पादित होगा
फाइल को सेव करने के लिए CtrlS दबाएँ
टर्मिनल पर जाएँ
और टाइप करें पर्ल हाइफेन सी कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए
अब एंटर दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
conditionalblocksपीएल सिंटैक्स ओक जैसे कि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर नहीं है अब हम पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करेंगे
टाइप करें पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
आई एएम इनसाइड एल्से स्टेटमेंट संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेम्पल प्रोग्राम्स का उपयोग करके पर्ल में इफ और if एल्से कंडिशनल स्टेटमेंट्स
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है प्रिंट करें इत इस एएन ओपन सोर्स लैंग्वेज जब पर्ल के रूप में वेरिएबल वैल्यू घोषित होता है
अन्यथा प्रिंट करें आईटीज आ प्रोप्राइटरी लैंग्वेज निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें